यहां पर अच्छी चित्र भी दिखाई दे रही है यहां पर इ स्टेज है यहाँ पर इ स्टेज मे अच्छी डिजाइन दिखाई रही है वाइट कलर की लाइट भी दिखाई दे रही है और पीले कलर की एक सिंपल से डिजाइन भी दिखाई दे--

ये बस है बस मे लिखा है समीर भी लिखा है नीले कलर की बस है उसमें व्हाइट कलर की भी बस है और काली कलर सब कलरो से पेंटिंग हुई है यहाँ पे सेठ भी खड़ा है यहाँ पे व्हाइट कलर का पैन्ट भी पहने हुए है नीले कलर --

हरी कलर की शर्ट भी पहने है और तार भी खड़े बिजली की तार भी खड़े ऊपर से हाइवै बड़ा दिखाई दे रही है जाली भी लगी है और पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।